और सामने यहाँ चबूतरा टाइप में बना है उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं।

सामने झीने दिख रहे हैं रेड कलर का पेंट है झीने पर।

शटर डाउन है दुकान बंद है अभी।

दो पिलर दिख रहे हैं ग्रे कलर का पेंट है जिसपे और साइड में पोस्टर लगे हुए हैं।

साइड में एक टेबल दिख रही है जिससे लाइन से ब्राउन कलर की चेयर्स दिख रही हैं और उसके पीछे एक स्टूल दिख रहा है वाइट कलर का।

इसके नीचे भगवान की मूर्तियां रखी है लाइन से खूब सारी।